दो चक्का गाड़ी भी दिखाई दे रहा है । चार चक्का गाड़ी भी दिखाई दे रहा है। ढेर सारे लाइटे भी दिखाई दे रहा है । बिजली के बड़े-बड़े खंबे भी दिखाई दे रहा है ।